ये एक नदी है सामने की तरफ एक नदी है दिख रही है जिसमें तालाब में पानी भरा हुआ है इसमें झाड़ इसमें सामने की तरफ चिन्दे की ढ़ेरी लगे हुए है।

सामने एक मंदिर नजर आ रहा है चारो तरफ किनारो पर इसमें सीढ़िया बनी है मंदिर गुलाबी कलर का है पीछे बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

--सामने की तरफ एक बड़ी सी सड़क नज़र आ रही है जिसमे एक पिक उप तीन पिक उप खड़े हुए है ज जो कुछ सारा लगेज लिए हुए जा रही है पीछे की तरफ पूरी बस्ती नज़र आ रही है ये सड़क काफी कच्ची है।

सामने के तरफ एक बड़ा सा गेट बना हुआ है इसमें पार्किंग एरिया भी है जिसमें फोर व्हीलर टू व्हीलर खड़ी हुई है साइड में गार्डनिंग एरिया भी बना हुआ है जिसमें पिअर और पोट लगे हुए हैं।